पहाड़ पे एक बंदर चढ़ा हुआ है हाफ पैन्ट और--

ये नही में कॉर्नर पे गुमने के लिए देखने के लिए सो पिस मे बनाये जाते है।

ये ऊपर रूम में गीजर लगा हुआ हैं गर्म पानी के लिए।

ये मॉल है मॉल में अंदर आने के लिए गेट खुला हुआ है।

छज्जा के नीचे गाड़ियां खड़ी है एक साइड में कार खड़ा है काफी स्पेशियल जगह है किनारे किनारे--

अच्छी जगह हे खाली जगह हैं।

इधर साइड से चार पांच खिड़कियां दिख रही है छोटा छोटा दो लाइन में खिड़कियां है सफ़ेद कलर की बिल्डिंग है।

लोग भारी हैवी सामने उठाने के लिए गाड़िया वादिय गिर जाये खाई में या कही भी--

है हरा भरा है आगे बंदे खड़े हुए हैं फिर--

ई देखने मे सुंदर लग रहा है फ्रन्ट से।

ये अँधेरा है रात का समय है ट्रांसफार्मर दिख रहा है बिजिली का--

एक लड़की खड़ी है नृत्य करने के ड्रेस मे नृत्यांगना ड्रेस --

ये पहाड़ी एरिया है।

जुग्गी टेंट जैसे कुछ पड़े है।

ऊपर से बहुत सारी लाइटे हे निचे--

पेड़ पौधे भी पेंट किए का मतलब दिखा रहे हैं बहोत ही--

डेकोरेट किया गया सजावट फूल पत्तियां भी अच्छे से हैं।

आगे बाइक वगैर खड़ा है आगे बाइक वाला खड़ा है।

पेसियल जगह हे खिडकिया हे साफ सुथरा जगह हैं।

यहाँ दीपक केयर सर्विस स का बोर्ड लगा हुआ हैं ये--

सर्विस सेंटर है कूलर रखा गया है आगे पानी का--

अभी अच्छा लोकेशन दृश हे अच्छा हैं।

ये ए_टी_एम का कंपलेक्स है कंपलेक्स में बहोत सारा--

दुकान है ए_टी_एम है सामने ए_टी_एम के सामने बहुत सारी बाईकें लगी हुई है एक बंदा खड़ा है।

वेट करने के लिए लोग खड़े है बैठे है।

ये दुकान है दुकान मे रैक पे अलमारी--

शैम्पू लोशन क्रीम वगेरा बगेरा --

बड़ी जगह गुमने फिरने के लिए कभी कभी लोग जाते है फिलहाल कोई दिख नही रहा है इसमे।